पेड़-पौधे हैं जो कि हरा-भरा हैं बीच में चलने के लिए रास्ते बने हैं फूले लगी हैं।

सामने की ओर लाइट के खंबे लगे हैं बहुत से लोग अगल - बगल खड़े हैं छोटे बच्चे --

बहोत से दरवाजे हैं रुम हैं।

एक बड़ा सा मैदान है मैदान के पास एक बड़ा सा ब- मकान है जो कि तीन मंजिलें का है उसके सामने बहुत से मुसलमान लोग बैठे है जो कि सभी ने टोपी लगाया है।

एक ओटा सा में - में-आँगन है आँगन में एक ब्लैक कलर की गाय है एक आदमी खड़ा है एक औरत है एक छोटा सा मकान है जिसमें दरवाजा लगा है अगल-बगल ईंटें दिख रहे हैं ।